यहाँ हमे बड़ा सा एक मैदान नजर आ रहा है मैदान के उस पार एक बड़ी सी इमारत नजर आ रही है| छोटे-छोटे बच्चे मैदान मे खेल रहे है और बड़ी सी टेबल और दो-तीन अ- कुर्सिया भी रखी हुई है।

अम्म गेट का जो रंग है वह लाल रंग का है और आस पास दो बोर्ड भी लगे हुए हैं और आसमान बहुत नीला है।

उसके ऊपर एक मुकुट सी भी बनी हुई है और बगल में कुछ बाइसाइकिल टू कीप कैट रखा लिखा हुआ है और एक बिजली का खंभा भी नजर आ रहा है।